सामने हरा भरा पेड़ पौधा भी दिख रहे हैं।

यह एक टेबल है इस टेबल का कलर भूरा है।

इस दुकान में बहुत सा दिखाई दे रहा--

वहां पर लाइटें लगी हुई है और पंखा भी लगाया गया है।

और सामने ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है।

क्लास में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं।

यह एक मकान है इस मकान में ऊपर करकट लगाया हुआ है।

बाहर में तीन चार कुर्सियां दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल भी दिख रहा है।

चेयर पे बहुत सारा आदमी लोग बैठे हैं और लैपटॉप चला रहे हैं।

यहां पे कपड़ा का परदा लगाया हुआ है।

और एक सामने गेट है।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

और यहां पे एक आदमी मशीन बना रहा है।

उसके बगल में बहुत सारा पेड़ पौधे दिख रहे है।

बाहर में एक काउंटर है।

इसमें रॉड का जाली लगाया हुआ है।

खजूर के पेड़ भी है।